मकान भी है बहुत खिड़की भी है दिख रहा है खिड़की।

माला भी गला में है।

बहुत सारा यहाँ मंदिर है बाबा का।

रोड भी है इसमें बाइक भी खड़ा है।

एक होलसेलर है सोफा पे आडमि आदमी बैठा हुआ है बहुत सारे कपड़ा भी है।

कमर में भी बंधा हुआ है साड़ी धोती।